जो भी होगा और यहाँ पे बहुत मस्त ट्रेन लग रहा है।

और इसका बैठने वाला भी बना हुआ है कुर्सी नियर बना हुआ है। उसके बाद सभी --

यहाँ पे कितना मछली है। यहाँ पे मछली लगता है बेचते हैं और उसके बाद यहाँ पे कितना मस्त-मस्त मछली है। छोट-बड़ सब मछली रखते हैं और ये गाड़ी में बैठा हुआ है।

यहाँ हरा भरा फूल भी है उसके बाद सभी तरह के यहाँ अति है बहुत मस्त लग रहा है।

यहाँ पे बहुत बढ़िया दौड़ने वाला पिच बनाया हुआ है। यह मस्त काफी सुंदर बुतरू बच्चा भी दौड़ रहें हैं। उसके बाद उहाँ मस्त काफी सुंदर लग रहें हैं लेकिन और यहाँ पर सभी दौड़ सकते हैं।